यहां पे एक आदमी खड़ा होकर कुछ काम कर रहा है।

ये दरवाजे में ग्लास फिटिंग कर रहा हैं।

जहां पे की एक कस्टमर रूम बुकिंग के लिए आए हुए हैं।

बातचीत कर रहे हैं कस्टमर ने येलो टी शर्ट --

छोटा सा आसमान दिख रहा है।

टावर की तरह दिख रहे है यहां पे खड़े होने के लिए कुछ जगह है।

दीवार बहोत सुंदर दिख रहा है।

दुकान बहोत अच्छी तरह से सजाया गया है।

एक आदमी पैसा विथड्रॉ करके बाहर खड़ा हुआ है।

ये कोई ब्यूटी पार्लर जैसे दिख रहा है शायद ये ब्यूटी पार्लर है।

बाइक वाला ये खड़ा हुआ है रेनकोट पेहन के--

ये कुछ सामान भी है।

बहोत सारा सामान यहां पर रखा गया है कुछ काम के लिए--